इसमें बहुत सारी मच्छी रखी हुई है।

इस चित्र में बहोत सारे बच्चे नीचे बैठे हुए हैं।

और एक माता जी का पोस्टर भी लगा हुआ है।

और साइड में कुछ सोफे भी रखे हुए और एक स्टूल भी रखा हुआ है।

और लोहे के ग्रिल भी लगे हुए है।

ये एक बहोत बड़ी कंपनी है इस कंपनी में बहोत से आदमी बैठे हुए हैं।

और इसके अंदर कुर्सियां भी रखी हुई है।

यह एक बहुत बड़ी मिठाई की दुकान है।

कॉलेज में बहोत सारी शीशे की खिड़कियां लगी हुई है।

और एक पानी की टंकी भी है।